यह एक पार्टी एरिया दिख रहा है।

आसमान भी दिखाई दे रहे हैं।

यह एक बहुत बड़ी चट्टान दिखाई दे रही है और यहां पे गुफा दिखाई दे रही है।

ये एक बहोत बड़ी फैक्ट्री दिखाई दे रही है ये ऊपर से ब्लू कलर की है और या--

बिजली के खम्भे दिखाई दे रहे हैं।

बहुत सारे पाइप दिखाई दे रही है आ--

और यहां एक लड़का दिखाई दे रहा है जिसने काले रंग का कुर्ता पजामा पहना है और येलो स्टोल लिया है।

यहा पर शॉप्स दिखाई दे रही है शॉप के उपर फूड ट्रैक लिखा हुआ है और यहा पे बहोत सारे लोग दिखाई दे रहे हैं।

और यहां खिड़कियां भी दिखाई दे रही हैं।

बोट भी दिखाई दे रही है। लोग दिखाई दे रहे हैं और बहोत खुल्ली ग्राउंड दिखाई दे रही है। पेड़ दिखाई दे रहे हैं।

और पेड़ भी दिख रहे हैं आसमान भी दिख रहे हैं।

डेयरी फार्म लिखा हुआ है।

खड़े हैं और यहां फ्लोर भी दिखाई दे रहा है फ्लोर पे टाइल्स लगी हुई हैं।